यहां पर बहोत सारी मशीन लगी हुई है।

ये एक साई टी स्टोन है यहां पर लोग चाय पीते हैं।

यहां पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है।

इसके आस पास--

वगैरा खड़ी कर सकते हैं इसमें यहां पर आसपास सभी तरह की सुविधाएं हैं यहां पर --

बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है।

यहां पर डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं।